फल बाजार भी है।

यह एक मॉल है जहाँ पर कुछ कपड़े टंगे हुए है।

एक स्टैंड में बहुत से डिज़ाइन के कपड़े लगे हुए है।

जो कि खजूर का है।

जहाँ पर कुछ औरतें और कुछ आदमी बाहर खड़े है।

कुछ लड़के इधर साइड आ रहे हैं आगे की ओर --

कुछ बाहर की ओर--

वह अपना अच्छा सा बॉडी बनाया हुआ है।

अपना गाड़ी बनवाने आए हुए है।

दो लड़का बाहर खड़ा है।

वहाँ पर केवल कुर्सी लगे हुए है।

जहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है।

चम्मच रखा हुआ है।

एक कटोरी में --

पूरी रेस्टोरेंट में दो साइड ही लोग बैठे हुए है।

एक गिलास में पानी है।

एक पर्सनल --

कुछ कुर्सियाँ लगी है।

यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए है।

ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई बात को लेकर आर्गुमेंट हो रही है।

बाहर में बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे --

एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ है।

यह एक कॉफी कैफे है।

शॉप है जहाँ पर--

पोस्टर लगा है।

जहाँ पर बहुत सारी सिलेंडर रखे हुई है।

कुछ छोटे सिलेंडर रखे हुए है।

यह एक ऑफिस है।

जिसका फुल फॉर्म --

पैंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट --

पी_वी_टी अल _टी_ डी है।

बगल में एक नदी है जो बहुत बड़ी है।

यह एक मॉल है।

जिसका नाम नागरमल --

सियोना रैन --

कुछ अंदर जा --

कुछ औरतें भी खड़ी है।

जहाँ पर एक --

बगल में बहुत सी टेबल --

जो कि बहुत ही सुंदर है।

बास के कुछ डंटे लगे हुए है।

एक बाइक बाहर की ओर लगी हुई है।

एक उजली रंग की पीछे--

पेट्रोल पंप पे बहुत सी गाड़ियाँ लगी --

जो संख्या में --

दस दिख रही है।

यहाँ पर एक समारोह हो रहा--

ढोलक लेके बहुत संख्या में --

यह एक गार्डन हैं जहाँ पर बहुत से छोटे-छोटे --